जिम के अंदर की फ़र्श जो है वो लकड़ी की है।

घरो की दिवारें कई सफ़ेद कलर की हैं और कही ईट वाली हैं।

और बहुत सारे बिजली की तारे दिख रही हैं ऊपर आकाश दिख रहा है चारों तरफ बड़े-बड़े हरे पेड़ दिख रहे हैं।

और रिसेप्शनिस्ट पे केबिन बना हुआ है और बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है में आई हेल्प --

बाउंड्री बनी हुई है। लोहे का एक बड़ा सा खम्भा दिख रहा है। नीला आकाश दिख रहा है। पेड़ दिख रहे है।

लाल और सफेद कलर के और नीले और सफेद कलर के बहुत सारे बैलून लगे हुए है।

ओ बहोत सारी बाइक रखी है लाल कलर की नीली कलर की और काली कलर की।

काले कलर की छत दिख रही है।

जो की सफेद कलर का है। और लकड़ी का एक बड़ा सा नीचे दरवाजा लगाया गया जो गोल्डन कलर का है।